रमा मेरिज होम है वाइट कलर से पेंट है तार हैं पर्दा है ग्रीन वाले डेकोरेशन है।

महल है वाइट कलर से पेंट है पत्ती है।

पहाड़ है पुल है दीवार है गार्डन है ग्रिल है हरे पेड़ है हरी ग्रिल है हरी पट्टी है।